एक स्कूल है और नीचे बच्चे लोग पेंटिंग कर रहा हैं पीला कलर का चार्ट पेपर है स्टोर मेन है बगल में मेम खड़ी है लड़का-लड़की बच्चे लोग पेंटिंग -उन्टिंग कर रहे हैं और उसके बगल में फूल का गमला-उमला है और ब्लैक कलर का ग्रिल है और खिड़की है ब्लैक कलर का ।

एक दुकान है और उस दुकान में धुलाई होता है पोलिश होता है रंगाई होता है रफ्फु होती है धुलाई व् डी किया जाता है बगल में ब्राउन रंग का चेयर है उसके बगल में है हवा-हवाई ऑटो लगा हुआ है सामने से रस्ता एक दुकान है |

हॉल है और सामने लड़का-लड़की बैठने वाला जगह है बगल में आदमी लोग खड़ा है नी नीचे पूरा सजाए हुए हैं फूल पत्ती से झरना है नीचे में झरना में से पानी निकल रहा है और जमीन है पूरा घास पौधा वाला ढेर सारा फूल सजाया हुआ है सीढ़ी है बगल में।

एक ऑफिस टाइप का है ये दूकान है उसके बगल में सामने रिसेप्शन है उसके बगल में थम्स अप स्प्राइट फांटा का ठंडा रखा हुआ है स्टॉल लगा हुआ है उसके बगल में फिर कुरकुरे का पूरा स्टाल लगा हुआ है सोफा है रिसेप्शन के बगल में शीशा का ये क्या बोलते हैं टेबल रखा हुआ है फिर उसके बगल में --